यहां पर एक अ म बैन वो वो गाड़ियों को उठाने वाली क्रेन है और जो नूर को नो पार्किंग में खड़ी रहती है।

औ कॉफी रखी हुई है उसमें और यहां पर जो है एक बोतल भी रखे है ठंडे पानी की और उधर की तरफ मसाले की दो शीशीयां में रखी हुई हैं।

और ऊपर की तरफ भी बहोत सारी इसमें बने हुए हैं और यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहां बहोत हरियाली है और इस रोड की तरफ भी--

ये यहां पर बहुत सारे लकड़ी के मीनार सी बनी हुई हैं बहुत बहुत पिलर बने हुए हैं।

और यहां पे पूजा करी जा रही है यहां पे बहोत दूर तक बना हुआ है सब में--

और बहुत सा चीज है यहाँ पे एक दरवाजा बंद है और लोहे का है।

मरीज से बने हुए बच्चे बने हुए हैं ये और यहां पर--

सिंघाड़ा है और गन्ने हैं इस तरीके के बहोत से फल है यहां बहोत सारी लड़कियां भी है साथ में और एक लड़का है जो--